सामने की तरफ व्हाइट कलर की झूमर लगी हैं।

यहां पर दो साइकिलें दिख रही है रेड और मैरून कलर की।

उसमें कुछ बहुत सारे झंडे लगे हैं और झंडो में ब्लू पीला ऑरेंज सफेद कलर है।

और उसके पन्नी का कलर व्हाइट है गुलाबी है येलो है पिंक है।